बहुत ही सुन्दर है बहुत ही बढ़िया है बहुत ही अच्छा --

एस.बी.आइ बैंक लिखा हुआ है ये समझो बैंक है पांच तला बिल्डिंग ऊपर में भी एक तला बन रहा है।

बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है एक रह गया आदमी एक गाड़ी है सड़क है बहुत ही अच्छा है। ।

हरा-भरा है पेड़ पौधे है बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छा है दृश्य जैसा दिख रहा है बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छा--